यहां पर एक छोटा सा ग्राउंड है जिसमें यहां पर एक गाड़ी खड़ी हुई है बीच में--

यहां पर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें यहां पर हरा भरा घास उग रहा है यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जो की फुटबॉल खेल रहे हैं यहां पर सफेद कलर की फुटबॉल है।

आ रही हैं आ जा रही है।

दो पंखे लगे हुए हैं ऊपर बहुत सारी लाइट लगी हुई है।

जिसके ऊपर नीले रंग ते लिख रहा--

उसके ऊपर कुछ रखा हुआ है।

बच्चों के खेलने की चीज रखी हैं।

सफेद सफेद इनके ऊपर सीमेंट पड़ा हुआ है।

यहां पर अंदर बहुत सारी लाइटें लगी हुई है दो चार पंखे--

दीवारों पर बहोत सारे पोस्टर लगे हुए हैं नीचे यहां पर ईंट बिछी हुई है।

लगा रखा है काले रंग का।

और उसके बराबर में कितने सारे पेड़ खड़े हुए हैं।

पिछे में कितनी सारी और बकरियां है।

और यहाँ पे तीन चार बाइक स्प्लेंडर खड़ी हुई है।

और यहां पर येलो एक बड़ा गेट लग रहा हैं जिसके बरबर में एक थामला है।

उपर एक बहुत बड़ा ग्राउंड है ग्राउंड के अंदर जहां पर तीन चादर बिछी हुई हैं चादर के ऊपर तीन औरतें खड़ी हुई है जो कि जहां पर योगा कर रही हैं।

यहां पर एक बहुत बड़ा रोड है जिसमें यहां पर एक गाड़ी खड़ी है लाल रंग की यहां पर दो तिकोने जैसे खड़े हैं यहां पर एक ए_सी लग रखी है।

सामने एक बहुत बड़ी जिम है जिम अंदर यहां पर बहुत सारा लोहे का समान रखा हुआ है बहुत सारी प्लेट रखी हुई है।

यहां पर बहोत सारे फल पड़े है पत्ते पड़े हैं। पीछे बहोत सारे पेड़ खड़े हैं यह पर बहोत धुंध आ रही है यहां पर --

रैक बना रखें हैं जिन के अंदर बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं सामानों के नीचे यहां पर बहुत सारे कार्डबोर्ड के डब्बे रखे हैं ऊपर दो तीन बड़े बड़े डब्बे हैं स्पीकरों के यहां पर एक छोटी सी सीढ़ी है यहां पर--

छोटे छोटे और बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं हरा भरा घास उग रखा है यहां पर बहुत सारे--

पीछे यहां पर एक टेंट लगा हुआ है बहुत बड़ा यहां पर बहुत सारे गमले खड़े हुए हैं।

यहाँ पे एक बहोत बड़ा रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में यहाँ पर बहोत सारी कुर्सियाँ रखी हुई हैं अलग-अलग रंग की नीली पीली लाल --

जिसमें नीले कलर की इतनी सारी पाइप लगाया हुआ है।

और उसके बराबर में एक खंभा खड़ा हुआ है।

जिस पे प पर्दा गिर रहा है।